एक शोरूम दिख रहा है अच्छा सा बड़ा शोरूम दिख रहा है शोरूम के आजू बाजू दो दो दो दो दिख रहे हैं ऊपर दिख रही है चालू दिख रहे हैं।

और बाजू मे एक लेडिस भी जा रही है आजू बाजू दुकाने दिख रहे है ऊपर लाइटिंग और फैन भी चालू है।

ये किसी का बड़ा सा घर दिख रहा है घर के सामने रोड दिख रही है रोड के आजू बाजू ठहरे हुए हैं।

बहोत सा सामान दिख रहा है यहां पर काउंटर पर चश्मा दिख रहा है क कैची दिख रही है। परस परत दिख रहा है और बॉटल में पानी भी दिख रहा है। बहोत सारा सामान दिख रहा है। यहां पर --

ये किसी का मैदान दिख रहा है जैसे फुटबॉल बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

ये कोई बड़ी सी मंदिर या बड़ा सा घर दिखता है या मंदिर दिख रही है बहुत बड़ी दिख रही है मंदिर और आजूबाजू झाड़ें दिख रहे हैं।

ये कोई ऑफिस दिख रही है यहां पर बहुत सारे लोग आकर ठहरे हुए हैं और एक जने फोन में बात कर रहा है बहुत सारे लोग यहां पर ठहरे हुए हैं।

जैसे गार्डन की फोटो लग रही है यहां पर आस पास बहुत झाड़ें दिख रहे हैं यहां पर बैठने के लिए भी दिख रहा है।

गुलदस्ते रखे भी गए हैं लाइटिंग का फ्लावर रखा गया है और सामने कुछ गुलदस्ते दिख रहे हैं।

और पीछे भी दिख रहे हैं खंभे दिख रहे हैं बहुत सारे खंभे भी दिख रहे हैं और बहुत सारे पब्लिक यहां पर ठहरी हुई है।

और सामने एक टीना का घर दिख रहा है बाजू एक सड़क भी दिख रही है और आजू बाजू ज्यादा झाड़ें दिख रहे हैं और बहुत सारा दिख रहे है यहां पर --

और एक जगह पुतला भी दिख रहा है और उस लगाया गया हुआ है।

और बैठने के लिए गट्टे भी दिख रहे हैं सूरज भी दिख रहा है और आजूबाजू झाड़ भी दिख रहे हैं और सड़क भी दिख रही है छोटी सी और घास भी दिख रही है गार्डन में छोटे-छोटे ----

किसी का बड़ा सा बंगला दिख रहा है बंगले के बाहर बड़ा सा गार्डन दिख रहा है बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है और सामने कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं बड़े-बड़े से --

और बाजू में झाड़ दिख रहा है और घर के बाहर उस में ठहरे हुए हैं तीन लेडिज हैं दो आदमी दिख रहा है।